इस फोटो में मुझे बहोत सारे खिलौने दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे एक पुल दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो में एक खिड़की दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे कुछ घर दिखाई दे रहें हैं।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

इस फोटो में मुझे छोटे-छोटे खंभे दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे कुछ बाइक दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो में मुझे बहोत सारी लाइटे दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो में मुझे कुछ सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो में मुझे नालंदा स्कूल की बिल्डिंग दिखाई दे रही है।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

एक मैदान दिखाई दे रहा है।

इस फोटो मे मुझे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे कुछ टेडी बियर्स दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे एक क्लीनिक दिखाई दे रहा है।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

इस फोटो में मुझे कुछ बिल्डिंग दिखाई दे रही--